इसमें आस दिख रही है। पत्थर दिख रहें हैं।

पहाड़ दिख रहें हैं। मकान दिख रहे हैं।

मकान दिख रहा है। आसमान दिख रहा है।

इसमे औरत दिख रही है। घास दिख रही हैं बिजली के तार दिख रहे हैं।

इसमें घाँस दिख रही है पेड़ पौधे --